और खंबे भी हैं और एक पीछे भी पेड़ है और एक पीछे भी स्कूल है और जे पेड़ भी है | ये घास खा रहे हैं |

और दो लोग फूल बेच रहे हैं और दो बने हुए हैं यहाँ पर।

देखिए यह क्या है और इस पे लिखा रही है मैं प्यासा हूं और बगल में पंखा लगा हुआ है।

द्वारा और एक आदमी खड़ा है और दो औरत भी है।

और दो कुर्सियाँ भी हैं और दो बोतल हैं। एक डिब्बा रखा हुआ है बड़ा सा सामने और अंदर आदमी बैठा है।